राम का सामने में दो औरत है।

यह एक दुकान है जिसपे बहोत सारा किताबें रखा हुआ है।

पीछे पे एक व्हाइट कलर का बिल्डिंग है।

डाइनिंग टेबल चेयर्स सब भी है।

ये फोटो पे दो कप कॉफी है।

इस फोटो पे एक छोटा बच्चा स्लाइड कर रहा है।

येलो कलर का डिम लाइट जल रहा है।

एक रूम है घर का ब्रिंजल कलर का वॉल है।

हवा भी चल रहा है जिसकी कारण पानी जो उबल रहा है।

अंदर पे वाइट कलर का लाइट जला हुआ है।

इलेक्ट्रिक वायरस भी दिखाई दे रहा है।

इस फोटो पे हमें बरा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।